यहां पर शटर खुला हुआ एक--

कुछ मजदूर ऊपर काम कर रहे जैसे की चार पांच है।

और नीचे में फर्श है ऊपर में पुटिंग करके--